मतलब म्म यहाँ पर एक प्रे हो रही है गॉड के लिए।

यहाँ पर एक जंगल है जिसमें के हिरण के बच्चे हिरण है और ये हिरण जो बहुत चतुर बहुत चालाक जानवर है एक मतलब जिसका शिकार के शेर भी नहीं कर पाते वही बच के भग जाती है हम --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

एक कॉफी शॉप है जहाँ पर के मतलब कॉफी पी सकते हैं दो कपल बैठकर या फिर दो दोस्त और यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते हैं एक पर जैसे कि यहाँ पर लाल सीटें और सफेद टेबल है और --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

हॉस्टल या फिर किसी बड़े कॉलेज की बिल्डिंग है जो कि एक स्टेडियम की तरह गोल है बिल्कुल जिसमें कि हम देख रहे हैं कि यहां पर बहुत सारा मतलब एक अलग ही इसमें फीलिंग आएगी।